योगा अकेडेमी है यहाँ पर बच्चे योग कर रहे है।

काउंटर के आगे ऑरेंज कलर की एक चेयर पड़ी हुई है ग्रीन कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

ये लॉ कॉलेज का गेट है जिसके दोनों ओर पेड़ लगे हुए है।

जिसकी बिल्डिंग व्हाइट कलर की है जिसपे ब्लू कलर से--;

यह समुंदर है समुंदर में नीला पानी है।

बहुत दूर साइड में बीच दिखाई दे रहा है।

गैराज में कार खड़ी हुई है जिसमें इंजन नहीं लगा हुआ है।

एक आदमी ट-टहल रहा है साइड में टीन सेड पड़ी हुई है छाँव के लिए।

स्विमिंग पुल है बैलूनस का गेट बना हुआ है।

यह एक फैक्ट्री है यहाँ पर बॉयलर लगा हुआ है।

कलरफुल बॉक्स हैं साइड में टाइल्स रखी हुई--

आयरन की रॉडस खड़ी हुई है अँधेरा हो रहा है काफी--

यहाँ मछलियों की दुकान है जहाँ बहुत सारे झींगे बिक रहे है।

यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है जिसके हाथ में वाटर बॉटल है सनसेट का टाइम हो रहा है।